यह दुर्गा माँ के एक स्वरूप महाकाली का मंदिर है। यहाँ पे महाकाली की मूर्ति जो कि शंकर भगवान के ऊपर उन --

का वह है डॉक्टर दीप्ति गाहिनी सेंटर भी है यह मेडिकल कॉलेज रोड हड़ावा फाटक के पास अशोक नगर गोरखपुर में स्थित है।

और यहाँ पे कैंसर से सम्बंधित और गायनी से सम्बंधित तमाम तरह के इलाज --

सुखा हुआ नदी सुखी हुई है।

और रामगढ़ताल का लुत्फ़ ले सकें ये रामगढ़ताल के किनारे स्थित है।

और नीला कलर का बूशर्ट भी पहने हैं। काफी सुंदर लग रहे हैं।

जो कि गोरखनाथ के पास जगह स्थित है श्रीकुंड। यहाँ पे श्रीकुंड में एक और --

वो लेकिन बहुत मीठा होता है। मजा आता है खाने में। मिलता नहीं है बच्चों को और अगर प्राइमरी स्कूल होगा तो खिचड़ी भी मिलती होगी यहां बहुत मस --